आगे दुकान के द सिटी लिखा हुआ है और ब्लैक कलर किया हुआ है छत पे।

सस्तक फाउंडेशन के बारे में बताया जा रहा है इसमें एक मास्टर और एक मैम खड़े है पीछे एक साइकिल दिखाई दे रहा है एक टेबल है इधरी एक रेड चेयर पड़ी है।